आस पास पेड़ पौधे हैं।

छवि में कुर्सियां है कुर्सियां भूरे रंग की हैं।

छवि में एक छोटी दुकान है दुकान के बाहर कई तरह के सामान रखे गए हैं।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

टेबल भूरे रंग के हैं और कुर्सियां भूरे और काले रंग की है।

साइकिल का रंग नीला और सफेद रंग का है।

गाय का रंग काला है।

यह छवि खुले क्षेत्र का है।

रेलगाड़ी के डब्बे का रंग नीला है।

कमरे के अंदर ढेर सारे कुर्सियां और टैबले रखी गई हैं।

कुर्सियों और टेबलों का रंग कला भूरा और लाल रंग का है।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

ऊपर की छत का रंग सफेद है।

उने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए है।

पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल कंपनी का है।

मोटरसाइकिलो का रंग काला और लाल रंग का है।

यह छबि एक दुकान के अंदर का तस्वीर है।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

यह छवि एक दुकान के बाहर का तस्वीर--

कुर्सिओं का रंग भूरा लाल और काले रंग का है।

बैग काले रंग और नीले रंग का है।

मैदान के ऊपर कई तरह के छोटे छोटे घास है।

यह छवि खुला छत्र का--

इस छवि में एक मस्जिद है।

पोस्टर पर आर_एन_स क्लीनिक एंड डैनोलॉजिस्ट लिखा हुआ हैं।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

छवि में ढेर सारे दरवाजे हैं।

दरवाजे का रंग भूरा है।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

जो काले रंग का वस्त्र पहना हुआ है।

यह छवि एक बैग दुकान के बाहर का तस्वीर है।

व्यक्ति ने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

पोस्टर पर रितु श्रृंगार स्टोर लिखा हुआ है।

अंदर का रंग नारंगी और सफेद रंग का है।

ऊपर की छत पर लाइट है।

छवि में पंखा है पंखा भी सफेद रंग का है।

ऊपर कि दीवार का रंग भूरा और सफेद रंग का है।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

कमरे के दीवार पर कुछ नंबरें लिखी हुई हैं।

यह छवि एक दुकान के बाहर का तस्वीर है।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

आसपास कई तरह के गाड़ियां खड़ी है गाड़ियों का रंग काला है।

जिम के अंदर कई तरह के व्यायाम मशीन रखी गई है जो काले रंग की है।